जो की सिक्स जी शायद है या फाइव _जी है पता नहीं कोन मॉडल की यहाँ पे गाड़ी है कई सारी लगी हुई है।

यहाँ पे कुछ सेल वगेरा कुछ यहाँ पे चल रहे है क्योंकि बलूनस लगे पड़े है शोरूम के अंदर मे बोहोत सारे बैलून है लाल नीले--

जैसा की आप देख सकते यह एक श-शोरूम के बाहर की फोटो है। जहाँ पर कई सारी बाइके खड़ी हुई है। जो ये शायद हीरो शोरूम के बहार की फोटो है।

क्योंकी यहाँ पे आपके सामने मे एक हीरो का ग्लैमर और कई सारे होंडा अ हीरो के साइन यहाँ पे पीछे में हीरो के आपको दूसरी एच_एफ_डीलक्स नाम की कई सारी यहाँ पे गाड़ियाँ आपके सामने मे नजर आ रही हैं।

जैसा कि आप देख सकते है यहाँ पे शायद ये किसी एक प्रिन्सपल या किसी भी ये आ क्लासिस के हैड के यहाँ पर फोटो अ यहाँ पर लगी हुई है।

ये शायद एक डॉक्टर का शायद कैबिन है क्युकी यहां पे एक ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन यहां पे आपको सामने मे लगी पड़ी है और पीछे मे न्यूटन का एक फोटो जो है जिसपे एक हार चढ़ा हुआ है और यहां पे लाल कलर की यहां पे नारंगी कलर की बैलून और हरे कलर की बैलून है।

जैसा की आप इस पिक्चर मे देख सकते है ये एक खण्डर या किसी पुराने घर का तस्वीर है जहाँ पे एक बोहोत पुराना घर है।